यहां पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा सा एक गार्डन बना हुआ है जहां पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत से --

यहां पर बहुत सारे जगह पर पुस्तके अलग - अलग जगह पे रखी हुई है ।

कुछ स्टूडेंट यहां पर घुटनों के बल भी बैठे हुए हैंस्टूडेंट की ड्रेस सफेद कलर की है।

कानों में एक हैडफ़ोन लगी हुई है जो की सफेद रंग की है।

यहां पर एक बाइक और एक कर भी खड़ी की गई है।

यहां पर कुछ बाइको के ऊपर हेल्मेट रखा गया है।

यहां पे छतों पे बहुत सारे अलग - अलग बलून भी लगाए हुए हैं।

अंदर एक घास उग रहे हैं इसके पीछे एक छोटी-छोटी झाड़ियां भी उगी हुई है जो की हरी- हरी है।

यहां पर एक इलाहाबाद बैंक का बोर्ड लगा हुआ हैजिसके पास में इलाहाबाद बैंक का ए.टी.एम. भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत ही सुंदर सा एक नदी बना हुआ है जहां पर बहुत सारे लोग हर दिन नहाने के लिए आते रहते हैं।

एक व्यक्ति यहां पानी केअन्दर यहां नाहा रहा हैबच्चा--